दीवार के साइड डिजाइन बनाई हुई है और उसके पास में तीन कुर्सी रखी हुई है।

मोटरसाइकिल खड़ी हुई है और एक लड़का की टांगे दिखाई दे रही है।

बेड दिखाई दे रहा है जिसपे--

यहां सामने एक लेडिज --

आदमी दूसरे लड़के को कुछ सामान दिखा रहा है।

बॉक्स में रखा हुआ है जो बहुत --

एक मुर्गा और है और मुर्गे के पास--

दर्शाया गया है जो बहुत अच्छा लग रहा --

हुए हैं और पीछे दीवार पे गुब्बारे लगाए हुए --

कपड़े हैंगर में लटकाए हुए दिख रहे--

काफी ज्यादा पेड़ लगे हैं।

पत्थर के ऊपर बैठा है और कुछ पत्थर के उस साइड अंदर --

और कुछ ल ड़कियां खड़ी हुई दिखाई दे रही --